एक चित्र मे एक बहुत ही खूबसूरत नजारे को प्रदर्शित किया गया है जहाँ पे एक सफेद कलर का एक बहुत ही बडा-सा महल जैसा कुछ है उसके सामने हरी-हरी घास है और एक बहुत सुन्दर-सुन्दर तीन चार पेड़ है।

इस पिक्चर में एक पुराने बोहत ही पुराने किले को दिखाया जा रहा है जोकि बोहत ही खाली स्थान पर है।

इस पिक्चर मे एक होटल को दिखया जा रहा हैं । जिसका नाम क्रांति होटल लिखा हुआ हैं जोकी काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और ये दृश्य अच्छा है।

इस पिक्चर मे एक दुकान को दिखाया गया है। जहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां कुछ मेज और अलमारी रखी हुई हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ी-सी मंदिर को दिखाया जा रहा है किन्तु ये मंदिर के सामने से फोटो नहीं ली गई है मंदिर के पीछे से बहुत दूर से फोटो ली गई है।

इसलिए मं मंदिर बोहत दूर मालूम पड़ रही है इस चित्र में। और एक नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है इस यह चित्र अनोखा लग रहा है।

इस पिक्चर में भी एक खाली मैदान को दर्शाया गया है जहाँ से एक रोड पास हो रही है उस रोड पे कुछ कोई भी नहीं है वह रोड खाली है यह एरिया सुनसान है।